यहां पर एक बिल्डिंग है जो की वाइट कलर का पेंट होता हुआ है और गाड़ियां भी है जो की रिपेयरिंग के लिए आई हुई है यहां पर काफी सारी मशीन भी दिखाई दे रही है।

जिसने दो दोदो जेंस ने व्हाइट कुर्ता एंड दो ने रेड पहना हुआ है लेडिज भी है वहा परकाफी सारी लाइटिंग भी जल रही है वहां पर।

एक कार दिखाई दे रही है जोकि रेड कलर की है उसपर न्यू न्यू दिखाई दे रही है एंड उसके पास मे एक जेंस है जोकि बाल्टी पकडे हुआ हैं।

यहा पर माता ने त्रिशुल भी पकड़ा हुआ है आस-पास दो तलवार भी दिखाई दे रहे है यहाँ पर पीले बैकग्राउंड ज़्यादा दिखाई दे रहा है यहाँ पर काफी सारा समान भी रखा हुआ हैमाता के दरबार--

यहाँ पर पानी भी यहाँ से आ रहा है जो की एक की तरह एंड यहाँ पर अ कुछ पेड़ पौधे--

दुकान दिखाई दे रहा है जिसमे ऊ म पीले कलर से पेंट गया है एंड यहां पर ऑरेंज कलर के जीने है।

काफी सारे लोग दिखाई दे रहे है यहा पर काफी सारे गाड़ियाँ भी रखी हुई है एंड यहाँ पर काफी सारे शॉप भी नज़र आ रही है।